उन पर ग्रीन कलर के पेड़ लगे हुए हैं और सामने वाले रोड है बड़ी सी--

इसके अगल बगल रेलिंग लगी है लोहे की और शीशे की भी है।

और ये सामने वॉल अलमारी है जो कि शीशे की बनी हुई है।

और लोहे के लंबे खंभे लगे हुए हैं जिन पर लाइटे और तार लटक रही है।

जिसके सामने की दीवारें सफेद कलर की है और दरवाजे कत्थई कलर के हैं।

उसके ऊपर बड़ा सा लंबा सा ब्रिज बना हुआ है लाइन से खंभे बने हुए हैं सफेद कलर के।

और नीचे वाल बहुत सारी लकड़ी की मेजे रखी है।

बाईकें खड़ी हुई हैं लोहे के छोटे छोटे खंभे लगे हैं।

एक बड़ा सा माल है सामने वॉल दो लिफ्ट है जिनकी सीढ़ियां ब्लैक कलर की हैं।

उनपर बहोत सारे लोग खड़े हैं और लो शीशे की रेलिंग बनी हुई है।

नीचे वाल बड़ा सा मेज़ है जिसके पीछे वाल कुर्सियां रखी हैं।

बगल के दीवार पर अलमारियां बनी हैं उसके अंदर सामान रखे हैं।

ये एक बड़ा सा डांस स्टूडियो रूम है सामने वॉल बड़ा सा आईना लगा हुआ है।

लाइन से लड़कियां खड़ी हुई हैं साड़ी पहनकर हाथों में तलवार भाला और और त्रिशूल लिए हुए हैं।

उस पर शिवकुंज लिखा हुआ है नीचे व लाइन से खंबे बने हुए हैं।

साइडों में छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं जो कि ग्रीन कलर के हैं।

एक डस्टबिन रखा हुआ है जो की बतक बना है उसमें ब्लैक कलर का--

बगल में रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिस पर वेलकम लिखा हुआ है अंदर सामान रखे हैं।

उस मेज के ऊपर चम्मच रखे हुए हैं ढेर सारे नैपकिन हैं शीशे के ग्लासेस हैं बोतल्स हैं मेनू हैं।

इस पर बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं और बहुत सारे फूल लटक रहे हैं छतों पर।

सामने छत के ऊपर वॉल एक मूर्ति है शिव जी की ब्लू कलर की।

नीचे वॉल फायर ब्रिगेड का टंकी रखी है दो।

सामने वाल बड़ा सा एक मंदिर है जोकि लंबे लंबे गुंबद बने हुए हैं।

नीचे वहां रेड कलर के छोटे छोटे खंबे लगे हुए हैं।

सामने बाहर बड़ी सी रोड है जहां पर बहुत सारी बाइके और कार मौजूद है।

और बहोत सारी लाइटें जल रही है ग्रीन और ब्लू कलर में।

अंदर वाल शीशे का काउंटर बड़ा सा है जिसके अंदर केक मौजूद है।

लाइन से उसमें खिड़कियां लगी हुई है ऊपर वल कपड़े लटक रहे हैं।

और ग्रीन कलर के सामने वाले बड़े बड़े पेड़ लगे हैं जिसके अंदर जमीने कच्ची मिट्टी की हैं घास उगी हैं।